एक टमटम के बाहर एक व्यक्ति टमटम को पकड़े हुए है और दूसरी टमटम उसके पीछे खड़ी हुई है।

टॉम टॉम के चारो तरफ छोटी छोटी हरियाली है और हरियाली के मैदान के सामने कुछ मकान बने हुए हैं।

सोसाइटी के अंदर मकान बनी हुई है और बाहर सोसाइटी के जहां एक गेट लगा हुआ है मैन गेट --

दो टमटम है गोदाम के अंदर खड़ी है और गोदाम के बाहर हरियाली खड़ी हुई है और गोदम के अंदर व्यक्ति खड़ी हुई है।

एक माकन के खिड़की का कांच टुटा पड़ा है और उस के ऊपर दो पोर्ट लगे हुए हैं।

एक गोदाम में टॉम टॉमे खड़ी हुए हैं और उस के आर.सी.सी. पर फैली हुए है ।

और और एक पिज बॉक्स रखा हुआ है।

उसकी दीवालों पर शाइनिंग वाला अलग-अलग प्रकार की लाइटिंग कलर है और उसमें के दीवालों पर लाइटें जल रही है।

एक शोरूम के अंदर किराने की कुछ समान मिलता है और उस शोरूम के बाहर कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं।